यह फोटो एक बड़े प्लेग्राउंड का है जिसमें काफी हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

घूम रही हैं तथा जिन में कुछ पैसेंजर्स हैं जो उस नदी में घूम रहे हैं तथा नदी के आस पास --

वे एक्सरसाइज कर रहे हैं व्यायाम कर रहे हैं।

इसकी बैसी तथा तकियों का कलर --

किसी सत्संग के बाहर का लिया गया है जो सत्संग--

खतम हुआ है या स्टार्ट हो रहा है।

जो बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं।

यह एक मिठाई की दुकान है जिसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनाई गई हैं।

तथा यह बैंक काफी बड़ी है।

तथा मौसम भी काफी साफ दिख रहा है।

तथा इस बगों के पास कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जो काफी हरे भरे हैं।

तथा एक व्यक्ति जो बिल्डिंग का काम करवा रहा है।

जो रात के समय मे यह फोटो लिया गया है।

यह फोटो एक हॉस्पिटल का है।

तथा सभी लोग अपनी अपनी छत से भी इस आयोजन को देख रहे हैं तथा इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं।

यह फोटो किसी बड़ी नदी के किनारे का है जिसमें कुछ नावे--

यह फोटो किसी वाटर पार्क का है इसमें काफी लोग नहा रहे हैं।

एक बैनर लगा है जिसपर मनोज क्रेन सर्विस लिखा है तथा उसपर मनोज यादव का नंबर भी लिखा है।